पेड़ है और पुराना दीवाल ईटा का है बगल में पेड़ है यहाँ पर बहुत सारा छुरी है ।

हाथी का रंग ब्लैक है उस पर कपड़ा रखी है दो व्यक्ति बैठे हैं उस पर एक व्यक्ति के अगेंस्ट में है हाथ में।

यहाँ पर बहुत सारा रहा है इतना सारा लोग एक ही सब कपड़ा पहन रहे है शर्ट सब के पास एगो ढोलक है वो बजा रहे हैं समस्या ये है कोई पर्व है यहाँ पर लेडीज लोग भी है जेंट्स भी लोग है।